अंदर एक वाइट कलर का बैनर लगा है। जिसमें बहुत सारे लिखे हुए है साइड मे दो बोर्ड है एक वाइट एक ब्लैंक वाइट में रेड कलर का लिखा है

सा अंगना हेय जिसमें बहुत सारे घास है ग्रीन कलर के कुछ पत्ते भी पड़े हुए हैं साइड में एक काला सा रोड है जिसमें व्हाइट कलर की गाड़ी जा रही है जिसकी कांच ब्लैक कलर की है।

बोहत बड़ा सा एरिया है जिसमे बोहत सारे बालू चिप्स है कुछ बोरे रखे हुए है दो गाडिया खड़ी है दूर में कुछ लोग गाडी लेके जा रहे है एक ब्लाक और येलो कलर का--

में एक बड़ा सा लम्बा सा पक्के का वाइटट कलर का रास्ता है। साइड में एक वाइटट कलर की मंदिर है ऊपर आसमान वाइटट ब्लैक एंड बैंगनी कलर का है।

एक पक्के का बड़ा सा रास्ता है। साइड में एक मंदिर है जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है जिसके नीचे में अअअ ग्रीन ऑरेंज रेड पिंक कलर है जिसके सामने में एक गेट बना हुआ है पक्के का एक बोर्ड लगा है।